हमे यहां में विंग मशीन भी देखने को मिल रहा है।

यहां का पानी देखने में पूरा ग्रीनीश लग रहा है।

ये फोटो में हमे एक ब्लू कलर का बिल्डिंग दिख रहा है जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

यहां पे हम लोग को एक आम का पेड़ भी देखने को मिल रहा है।

घर का नीचे हमलोग को बाली भी देखने को मिल रहा है।

यह फोतो में हम लोग को साइड से कोई चेयर ये सब बेचने वाला दुकान का फोतो दिखाया हुआ है।

ये फोटो में हमें भारतीय खाद्य निगम नाम का कोई जगह दिखाया गया है जो कि तेजू अरुणाचल प्रदेश में आता है।

यहा में हम लोग को एक ब्लैक चेयर दिख रहा है और दो तु रेड चेयर भी दिख रहा है।

ये फोटो में हम लोगों को हॉस्पिटल का वार्ड दिखाया गया है।

ये फोटो में हम लोगों को शायद से कोई पूजा होता हुआ दिख सकता है।

और इलेक्ट्रिक शॉप का डोर दिख रहा है।

पीछे हम लोग को एक येलो कलर का बस भी देखने को मिल रहा है।

जो शायद से कोई स्कूल का बस लग रहा है।

सामने मे हम लोग को डेटॉल और स्टेफ्री भी देखने को मिल रहा है।

ये फोटो में हमलोगों को एक नदी दिखाई दे रहा है।

इसका आजू बाजू में हम लोग को छोता और बरा पेर भी देखने को मिल सकता है।